और कुछ बहोत सारी झुगी झोपड़ियां बनी हुई है छोटी छोटी--

पक्षी और बहोत सारे लोग कुछ खड़े हुए हैं कुछ नहा धो रहे हैं कुछ कपड़े धो रहे हैं।

बोर्ड में लिखा हुआ है और इसके आस पास पेड़ पौधे भी लगे हुए हरे हरे दोनों साइड और सामने एक बड़ा सा पौधा लगा हुआ--

और सामने जाती हुए एक ब्रिज दिखाई दे रही है ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक अच्छी सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है सड़क के किनारे में लकड़ी की बाउंड्री बनी हुई है।

दिवालों में साइकिल की सीट सजी हुई है बिकने के लिए--